नीचे भी लाइटे जल रही हैं और गाड़ियां खडी हुई है बहुत सारी गाड़िया ख़डी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा --

इस घर में कोई भी नही दिख रहा है घर पर पानी की टंकी रखी हुई है और बहुत सुंदर सा लग--

हूँ यहाँ पर दो एक कमरा बना हुआ है कमरे में एक मूर्ति हुई है बहुत सुंदर लग रही --